बहुत से आदमी इनको देख रहे हैं।

सड़क पे एक बस खड़ा हुआ है पीले कलर का आदमी फुल से माला बना रहा है।

एक रैक पे रखा हुआ है।

ग्राउंड में एक पोल गड़ा हुआ है।

एक लड़का अपने हाथ में कॉपी पकड़े चल रहा है।

इश्के बगल में हरी हरी पत्तियां दिखाई दे रही हैं क्रूस का चिन्ह व्हाइट कलर में लगाया गया है।

पेट्रोल पंप में दो डीजल के नोजल हैं।

टसफर्मा भी लगा हुआ है।

आसमान में बादल छाए हुए हैं।

बगल में कंप्यूटर रखा है।

आसमान में बादल छाए हुए हैं।

यहां पे मुर्गी के छोटे छोटे बहुत सारे बच्चे हैं एक मिट्टी कलर की खाली कुर्सी रखी हुई है।

एक टेम्पु का एडिक्स न्यूड लगा हुआ है।

एक हॉल है।

घर में पंखे लगे हुए हैं दिवाल के किनारे एक ब्लू कलर की टूल रखी हुई--

ऑटो सिस्टम रखा हुआ है।

कुछ बोर्ड से तारे खींची हुई हैं।

बहुत सारे रेक रखी हुई है।

रैक के नीचे बड़ी बड़ी बाल्टिया रखी गई हैं।

यहां पे एक घर है।

सभी के बगल में एक लड़की चलती हुई दिख रही है।

एक साइड कपड़ा रखा हुआ है ब्रोप्लस का पाउच टंगा हुआ है।